यह एक दुकान है इस दुकान में बहुत से समान रखे हुए हैं और यहाँ बहुत --

और यहाँ बहोत सारे लोग इन मिठाइयों को खरीदने के लिए आते हैं।

और इस घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं।

यह कुर्सी के ऊपर एक आदमी बैठा इन सामानों को बेच रहा है और यहां बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है।

इस गांव में बहुत सारे घर हैं और इस गांव में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

चारो ओर से घिरा हुआ है इस मैदान के चारो ओर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।

जगह पर एक ट्रेक्टर खड़ी है।

इस बैंक का गेट अभी बंद है।